यहाँ हम देख सकणो हरे रंग का बोर्ड लग छु जै मा लिखा छु मेमोरियल चर्च यू मतलब यू एक चर्च छु चर्च मा ईसाई धर्म लोग लाग पूजा पाठ करुणि।

यहाँ हम देख सकणो बहोत बड़ा हॉल जैसे छु बीचों बीच अ-यीशु मसीह जैसे लगणी।

छू जख जख यु देखण मा लगणु छू यु छू जै में ओणी।

ट- स्टेचू ले स्केलटन जैस लागणी आदि मानव जैसा आद पशु जैस।

ये सीरियल देखणी ऐसे लगणी ये एक होटल छू जहाँ पर्यटक आके ठहरनी अ-खाणं पीयूंण सब भोत बढ़िया अरेंज होणीय।

चेल चनि डिग्री हासिल कोनी।

टोप ली छू बेल्ट छू और ऐसी लगणी ये छोटु मोटु मॉल जैसे छू जा मा बहोत सारी चीजें मिलणी जैका आम आदिम अफु निजी जिंदगी में प्रयोग करणी।